या एक झील छ जन की आप लोग देख सकदे झीलम पाणी बहोत ही गेहरो छ बहोत ही ज्यादा पाणी दिख्येण लग्युं समणी आप लोग पहाड़ देख सकदें।

ई टिहरी झील की फोटो छ जैम आप लोग देख सकदे बहुत सारी नाव छन लोग ये मा जी लोग नाव मा जी चढ़ी ते झील का चारों तरफ घूमदान।

चित्र म जी आप लोग दिख सकला एैंच एक बहोत ही बड़ू ब्रिज छ बन्यूं।

जुकी अलग-अलग दिशाओं बिटिन औंदी एक पौड़ी बिटिन औंदी एक दूसरी तरफ बिटिन आ देवप्रयाग कु या नाजारु बहौत ही सुन्दर लग --

तम्बू लगे त रंदान अर भोत अच्छु यखम फील करदान।

यह एक मकान की छत छा जेकी आप लोग देख सकदे ये पर अभी-अभी लेंटर पड़ी मतलब अभी-अभी यो मकान त्यार होया आ अभी पूरी तरीके से त्यार नि हुया आप लोग येम देख सक्दैन की येपर अलग-अलग प्रकार का बीम छन बणिया।

ये चित्र मा जी आप लोग देखला यह एक बहोत ही सुन्दर मकान छा जै मा जी कि निस दुकान छ खुलीं एंच मकान छ बण्यु।